एक आदमी खड़ा है जिसने नीले रंग की टीशर्ट और जींस पहन रखी है।

छोटी सुखी हुई घास लगी हुई है मिट्टियां पड़ी हुई है।

एक मेज है जो लाल रंग की है मेज के पास में लड़के और लड़कियां खड़ी हुई है।

चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ लगे है जिसमें लाल रंग के फूल लगे है।

एक पोस्टर लगा है जिसपे मैं वर्षा एजेंसी में श्री साईं राम एजेंसी लिखा हुआ है।

बहुत सारे हरे पेड़ लगे हुए हैं लोहे का खंबा जिससे बिजली के तारे निकली है।